साइड में पिज़्ज़ा भी लिखे हैं।

बाहर में बहुत सारा तस्वीर भी लगाके है।

मुझे ये तस्वीर में एक बड़ा सा बिल्डिंग का फोटो दिखाई दे रहा है।

वहां में छोता बड़ा आदमी लोग भी खड़ा होके है।

और यहां में एक अंकल झाड़ू मार रहे हैं।